मंदिर हैं। पाथे की दिवाले है। खामृ है। पोल है।

पंखा हैं। लाइट है। बैनर हाइटरजू है। पैदा है। लोग हैं ।